आस पास हरे भरे घास दिख रहे हैं जिसमें से एक नरियल का पेड़ जैसा दिखाई पड़ रहा--

बाटी के अंदर सफेद रंग का पानी दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक खुला रास्ता दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर में एक जिम सेंटर दिखाया गया है।

के ऊपर बहोत सारे फोटो फ्रेम दिखाई दे रहे हैं।

और सामने कि रोड से दो व्यक्ति बाइक में सवार आगे कि ओर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसके आसपास बहोत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

की ओर एक बाइक खड़ा दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक व्यक्ति शर्ट पे आयरन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसने काले रंग का और मुंह में सफेद रंग का मास्क लगाया हुआ है।

इसमें बहुत सारे दुकानदार मछली लेके बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने की ओर एक बहुत बड़ा नोटिस बोर्ड दिखाई दिया है।

हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके बीच में एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है।

और आगे की तरफ एक लकड़ी का बनाया हुआ गेट दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में बहोत बड़ा शॉपिंग मॉल जैसे दिखाया गया हैं जिसके ऊपर छत में छोटे छोटे बल्ब लगे हुए है।

सफेद रंग का घड़ी दिखाई दे रहा है।

आगे की ओर चार मूर्ति दिखाई दे रहे हैं जिनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं।

और रास्ते के दोनों साइड में मछलियों का दुकान लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मेन में एक दुकान दिखाया गया है जहां सिर्फ लड़कियों के कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर एक वॉल दिखाई दे रहा है।

एक एयर कंडीशन लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के आगे पान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिनमें से पांच व्यक्ति एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

के बीच में एक इंडियन आर्मी भी दिखाई दे रहा है।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

पे कई व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें तस्वीर में दो बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

सामने की ओर दो नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने कि ओर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

इसके गले में वर्णमाला दिखाई दे रहा है।

दो खिड़की और एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

सामने तस्वीर में बहुत सारे व्यक्तियों का भीड़ दिखाई दे रहा हैं।

के सामने दो औरत खड़े दिखाई दे रहे हैं।

आगे तरफ एक दुकान दिखाया गया है जिसमें ऊपर की ओर एक सफेद रंग का ट्यूबलाइट लगाया गया है।